कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है कुछ लिचि भी टंगी हुई है।

यह एक बहुत ही बड़ा बजार है।

यह एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर की दुकान है।

यह एक दुकाल के ऊपर एक पोस्टर भी बना हुआ है।

कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है एक कार भी खड़ी हुई है।

कुछ बच्चे टेल टेबल पे बैठे हुए हैं।

इस दुकान के अंदर दो आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक बहोत ही बड़ा स्कूल है।

एक लोहे का पिलर भी लगा हुआ है।

स्कूल के अंदर बहुत ही सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।

एक बहोत ही लंबा चौड़ा पुल भी बना हुआ है।